और कुछ टेंट लगे हैं जिनका रंग--

सामने एक हॉल है जिसका रंग--

गार्डन है जिसमें कुछ पेड़ पौधे हैं।

काला सफेद आदि रंग के हैं।

लोग है और एक पोस्टर लगा है जिसका रंग संतरा रंग का हैं।

हरे रंग का है और एक आदमी है जिन्हें--

और कुछ लोग हैं जिनने सफेद रंग के कपड़े पहने हुआ है।

काले रंग का है और एक आदमी है जिनमें भूरे और नीले रंग के कपड़े --

जिसका रंग सफेद रंग का है।

बहोत सारे पेड़ पौधे हैं जो कि हरे रंग के हैं।

सामने एक हॉल हैं जिसका रंग--

सीढ़ी में ग्रिल लगा हुआ है जीसका रंग--